इस तस्वीर में हमे चार लोग नजर आ रहे है।

चारों तस्वीर खींचा रहे है।

यह एक चाय बागान की तस्वीर है इस तस्वीर में दो लड़के भी नजर आ रहे है।

इस चित्र में वॉल के कलर पीला नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक बड़ा नदी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक आदमी मछली पकड़ रहा है जाल की मदद--

इस तस्वीर में आदमी ने गमछा पहना हुआ है।

इस तस्वीर में कई सारी कुर्सियां भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक तिरंगा भी लहरा रहा है।

कुर्सियों का रंग लाल है।

चित्र में दो लोग कैमरे से फोटो ले रहे है।

बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे है।

बहोत सारे टेबल दिखाई दे रहे है इस चित्र में।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारे लड़के लड़कियाँ दिखाई दे रहे हैं जो पानी में खड़े है।

इस तस्वीर में कई सारे हिरने हैं।

इस तस्वीर में एक स्विमिंग पूल नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में एक अमरूद नजर आ रहा है।

इस छवि में एक आदमी ने जैकेट पहना हुआ है।

इस तस्वीर में एक टीना भी नजर आ रहा है।

इस छवि में कई सारी कुर्सियां हैं।

यह तस्वीर एक एरपोर्ट का है।

ट्रक का रंग हरा है।